यहां पर कुछ डिब्बे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे कट्टे भी रखे हुए दिखाई --

बहोत सारी घास भी दिखाई दे रही है यहा पर बहोत सारे--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

मेरा सामने एक ऑफिस दिखाई दे रहा--

कमरें भी दिखाई दे रहें हैं यहां पर बहुत सारी खिड़कीयाँ भी दिखाई दे रही हैं।

यहाॅं पर बंदर में के_टी_एम भीं दिखाई दे रहा हैं इसका लोगो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर एक छत्री भीं दिखाई दे रहीं हैं।

इसका लोगो येलो कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर एक गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहां पर ग्राउंड में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग का कलर येलो कलर का भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का कलर रेड कलर का भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारी सीढिया भी दिखाई दे रही--

यहां पर मशीनों के गद्दे ब्लैक कलर के--

मेरे सामने एक शॉप दिखाई दे रही शॉप में बहुत सारे सामान भी रखे हुए दिखाई दे रहे शॉप में गुड़ियां भी दिखाई दे रही शॉप में बच्चों के खिलौने भी दिखाई दे रहे--

रेस्टोरेंट में बहुत सारी लाइटें भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर कुछ दीवार भी दिखाई दे रही है दीवार येलो कलर की दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बैठने के लिए बेंच भी दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक ऑफिस दिखाई--

ऑफिस में बहोत सारे पर्दे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बहोत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ सरिये भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर --

गार्डन में बहुत सारे पोल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर कुछ जेंट्स भी दिखाई दे रहें हैं।